इस गोडाउन में बहुत सारे झाड़ू हैं।

इस तस्वीर में एक एल_ई_डी टी_वी दिख रहा है.

इस तस्वीर में सब्जी मार्केट दिखाई दे रहे हैं।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

इस स्कूल में एक बस दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर मे बोहोत सारे घर दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं इस तस्वीर में एक बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

जो कि हैंगर में टांगा हुआ है इस तस्वीर में टाइल्स दिख रहे हैं।

इस सेलून मे बोहोत सारे देवी देवताओं के फोटो लगे हुए है. इस --

इस दुकान के बाहर में एक एल_इ_डी बल्ब लगा हुआ है.

जोकि गड्ढा गोद रहे हैं।

इस तस्वीर में एक निशुल्क भोजन काउंटर का लगा हुआ है.

जोकि बिना पैसा का हे इस तस्वीर मे एक आदमी दिखाई दे रहे हे इस तस्वीर मे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हे जोकि कुर्सी पर बैठा हुआ हे.